पीछे घर मकान दिख रहे हैं बहुत तेज़ धूप की रोशनी दिखाई दे रही हैं पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं ज़मीन पर धूल और कंकर पत्थर दिखाई दे रहा है।

ये जो के बहुत सारी सजी हुई है बिल्कुल नई दिख रही हैं ऑरेंज और काले कलर की हैं ये बस जिसको सफेद और र रेड कलर के गुलाब के फूलों से सजाया हुआ हैं उसके आगे लाइटे लगी हुई है।

बहुत सारी बसे दिखाई दे रही हैं सामने सफेद और पीछे उसके कालीं बस दिखाई दे रही हैं पीछे पेड़ पौधे और बहुत सारा आसमान दिख रहा है।

टायर जा रहा है बस में कोई पैसेजर नही है बस खाली है उसकी खिड़कियां काले कलर की है।